टेबल पर रखा हुआ हरे डोने हैं टेबल पर रखी है वायर वगैरह है लगा के यहां पर--

इधर साइड में भी है जैसे टायर ट्यूब वगैरा को नट लगाते हैं नट कसते हैं वो नटे हैं ये--

यहां पर गेट खुला है और यहां पर लड़कियां--

यहां एक तस्वीर है अ फोटो फ्रेम और मंडी है इधर के साइड में भी फोटो फ्रेम है जोकि पेपर से लपेट हुए है।

ये पूरी मशीनरी वगैरह है यहां पर वायर लगा हुआ है और इधर अंजला है इधर के साइड में भी रखा हु--

यहाँ कांच का एक स्टूप लगा हुआ है जहाँ पर मूर्तियां वगैरह रखी है इसमें।

इधर साइड में अं एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है।

इधर साइड में अंदर में दरवाजे के अंदर में आदमी लोग जा रहे हैं केनरा बैंक में --